जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये किसी बड़ई का दुकान या घर लग रहा है कोई शॉप लग रहा है।

जैसा कि में देख पा रही हूँ ये किसी चौक कि तस्वीर है और ये रात की तस्वीर है।

और लक्स कोझी के भी मुझे दुकान दिख रहे हैं काफी सारे --

और उस पर ऊपर समीर ट्रैवर्स लिखा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक सुबह की फोटो है और एक यह मार्केट की फोटो है।

त्यौहार के या तो काली पूजा दुर्गा पूजा की त्यौहार का यह पंडाल बना हुआ है ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान की फोटो है यहां --

यहां पर मुझे सामने वाशिंग मशीन दिख रही है जो की आटोमेटिक वाशिंग मशीन है पी --

मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो झूला झूल रहे हैं यहाँ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक सैलॉन की--

जिन पे रेड और व्हाईट कलर का एकदम फ्रेश पेंट हुआ है सामने हमें एक साइकिल भी दिख रही है।

चार स्तंभ पर खड़ा हुआ है।